चारों तरफ थोड़ा सा हरियाली दिख रहा है। ऊपर आसमान दिख रहा है। देखने में अच्छा लग रहा है। पानी में मछली हो सकता है। देखने में सुन्दर लग रहा है। अच्छा दृश्य है।

पेड़ है। काली जी के मंदिर में बहुत बढ़िया सजावट किया हुआ है और यहाँ पे कपड़ा ओढ़ाया गया है माला पहनाया गया है और एक पथरीले जगह पर ये मंदिर है।

पक्का का घर है। बहुत सुन्दर घर दिख रहा है। पीछे जमीन है।